यहां पर गुब्बारे लगे हुइ हैं और कई तीन लोग बैठे हुए हैं और ये एक चेयर है।

यहाँ पर काफी लोग ढोल बजा रहें हैं और यहाँ काफी लोग खड़े होकर देख रहे हैं और यहाँ पर खूब बढ़िया फेन बो लग रही है यहाँ तीन लाइटें भी जल रहीं हैं।

ये लाल कलर का है और ये हरे कलर का है और ये ब्लैक कलर का है और ये एक बोहोत बड़ी इमारत है।

यहाँ पर एक है। इसकी यहाँ मार्केट लग रही है और ये यहाँ कुछ लोग व्यापारी भी हैं और ये खड़े हैं और यहाँ पर जे बैठ जा रहे हैं। इनकी काला बैग है।

और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ एक पेड़ है और यहाँ लाइट लगी है।

अलमारी है और यहां पर तीन कपड़े खड़े हैं और अं लगे हैं और ये लड़का का फोटू है ये लड़की का है --

और यह उसका बढियां कैमरे लगे हुए हैंऔर ये भी है। यह फोटो वारे हैं कई एक जोड़ी कपड़े हैं । पहन के आराम से चल--

ये काली माता कि मूर्ति है और हनुमान बाबा की मूर्ति है।